और यहाँ पर दयाराम पाठक स्मारक इन्टर कॉलेज और इसमे एक खिड़किया बनी हुई हैं बहोत सारे दरवाजे लगे हुए है।

तरफ मा खड़े हुए है और पीछे की तरफ इनके खिड़की लगी हुई है जिसमें उजाला आ रहा है और नीचे फर्श बनी हुई है और मेज पर --

इस पर कार -कार का फोटो बना हुआ है आनंद मोटर एजेंसी लिमिटेड लिखा हुआ है मोबाइल नंबर हैं।

यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है सामने की ओर जिसने हैलमेट लगाया है शर्ट पहना है जैकेट पहना हैं।

और शीशा ला सी शटर खुला हुआ है शीशे का दरवाजा लगा हुआ है दीवाल है उसपे सॉकेट लगाया है कुर्सी रखी हुई है।

काउंटर रखा हुआ है और काउंटर के ऊपर एक पेन रखा हुआ है रजिस्टर रखा हुआ है।